c और c ++ में relational operators के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे:
relational operators relational operators जैसे
less than से कम : जैसेa <b
greater than से अधिक : जैसेa> b
less than or equal to से कम या बराबर : जैसेa <= b
greater than or equal to से अधिक या बराबर : जैसेa> = b
equal to के बराबर: जैसेa == b
not equal to के बराबर नहीं : जैसेa != b
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ operating system के रूप में ubuntu 1110
ubuntu में gcc और g ++ compiler version 461
एक परिचय के साथ शुरू करें
relational operators integer और floating प्वाइंट संख्याओं की तुलना करने के लिए उपयोग किए जाते हैं
relational operators का उपयोग करके बनाये गए expressions false के लिए 0 और true के लिए 1 देते हैं
अब मैं एक c program की मदद से relational operators को समझाऊंगा
मैंने program पहले ही बना लिया है
अतः मैं editor खोलूँगा और code समझाऊँगा
सर्वप्रथम हम दो variables a और b घोषित करते हैं
यह printf statement उपयोगकर्ता से a और b की values प्रविष्ट करने के लिए कहता है
यह scanf statement a और variables के लिए input प्राप्त करता है
हम greater than operator का अध्ययन करेंगे
यह operator operator के दोनों ओर दो ऑपरेंड की तुलना करता है
यह true प्रदर्शित करता है यदि a b से अधिक है
यह printf statement केवल तभी एक्जीक्यूट होता है जब उपर्युक्त condition true हो
यदि उपर्युक्त condition false है तो यह छूट जाता है
नियंत्रित करने के लिए फिर अगले statement पर चला जाता है
हम अब less than operator का अध्ययन करेंगे
यह भी ऑपरेंड की तुलना करता है
यह तब true प्रदर्शित करता है जब a b से कम हो
यह printf statement तब एक्जीक्यूट होता है जब उपर्युक्त condition true हो
अन्यथा यह छूट जाता है
code को यहाँ तक एक्जीक्यूट करें
सर्वप्रथम निम्न पर comment करें
type करें/*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
save पर click करें
मैंने अपनी file relational c नाम से सेव की है
अपने कीबोर्ड पर ctrl alt और t कीज़ एक साथ दबाकर terminal window खोलें
कंपाइल करने के लिए terminal पर निम्न type करें gcc space relational dot c spaceo space rel
enter दबाएँ
एक्जीक्यूट करने के लिए type करें/rel और enter दबाएँ
मैंने a के लिए 8 और b के लिए 3 प्रविष्ट किया है
output प्रदर्शित होता है:
8 is greater than 3
आप a और b की विभिन्न values के साथ इस code को एक्जीक्यूट करने का अभ्यास कर सकते हैं
code पर वापस आएँ
यहाँ से comment हटाएं
और इसे यहाँ रखें
अब हम less than or equal to operator का अध्ययन करेंगे
यह operator operator के दोनों ओर दो ऑपरेंड की तुलना करता है
यह true प्रदर्शित करता है यदि a b से कम या के बराबर है
printf statement एक्जीक्यूट होता है यदि उपर्युक्त condition true है
यदि उपर्युक्त condition false है तो यह छूट जाता है
फिर control अगले statement पर चला जाता है
इसके बाद greater than or equal to operator पर आते हैं
यह a और b की तुलना करता है और true प्रदर्शित करता है यदि a b से बड़ा है या उसके बराबर है
यदि condition true है तो यह printf statement एक्जीक्यूट किया जाएगा
अब code को यहाँ तक एक्जीक्यूट करें
save पर click करें
terminal पर वापस आएं
पहले की तरह कंपाइल और एक्जीक्यूट करें
मैं a के लिए 8 और b के लिए 3 प्रविष्ट करता हूँ
output इस प्रकार प्रदर्शित होता है:
8 is greater than or equal to 3
अब शेष code पर वापस आएँ
यहाँ से मल्टी लाइन comments हटाएं
और यहाँ से
हम अब equal to operator का उपयोग करेंगे
इसे double equal == चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है
यह operator true प्रदर्शित करता है जब दोनों ऑपरेंड एक दूसरे के बराबर होते हैं
यह printf statement तब एक्जीक्यूट होता है जब a b के बराबर हो
यदि नहीं तो control अगले statement पर चला जाता है
उसी प्रकार हम not equal to operator का उपयोग करेंगे
यह operator true प्रदर्शित करता है जब दोनों ऑपरेंड एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं
यह printf statement तब एक्जीक्यूट होगा जब a b के बराबर नहीं है
program की समाप्ति पर आते हैं return 0;
save पर click करें
terminal पर वापस आएं
पहले की तरह कंपाइल और एक्जीक्यूट करें
a के लिए 8 और b के लिए 3 प्रविष्ट करें
output screen पर प्रदर्शित होता है:
8 is not equal to 3
इस प्रकार हम देखते हैं कि relational operators कैसे कार्य करते हैं
इस code को inputs के विभिन्न सेटों के साथ एक्जीक्यूट करने का प्रयास करें
अब c ++ में एक ऐसा program लिखना काफी सरल है
यहाँ syntax में कुछ अंतर हैं
मैंने पहले ही c ++ में code बना लिया है
यहाँ c ++ में relational operators के लिए code है
ध्यान दें कि header भिन्न है
इसके अलावा हमारे पास यहाँ using statement है
c ++ में output statement cout है
और c ++ में input स्टेटमेंटcin है
अतः इन भिन्नताओं के अलावा दोनों codes काफी समान हैं
save पर click करें
कृपया सुनिश्चित करें कि file को cpp extension के साथ सेव किया गया है
मैंने अपनी file को relational cpp नाम से सेव किया है
code को कंपाइल करें
terminal खोलें और type करें g ++ relational cpp space minus o space rel1
एक्जीक्यूट करने के लिए type करें /rel1 और enter दबाएँ
मैं a के लिए 8 और b के लिए 3 प्रविष्ट करता हूँ
output प्रदर्शित होता है:
हम देखते हैं कि output c कोड के output के समान है
अब उस error को समझते हैं जो आ सकती है
program पर वापस आएं
मानिए कि यहाँ हम double equal चिन्ह को single equal चिन्ह से बदलते हैं
save पर click करें
terminal पर वापस आएं
पहले की तरह कंपाइल और एक्जीक्यूट करें
यहाँ हम देखते हैं कि यह प्रदर्शित कर रहा है 3 is equal to 3
अपने program पर वापस आएं
ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हमने एक assignment operator का उपयोग किया है
अतः b की value a में निर्दिष्ट की जाती है
अब इस error को fix करें
एक equal to चिन्ह type करें
save पर click करें
terminal पर वापस आएं
पहले की तरह कंपाइल और एक्जीक्यूट करें
अब output सही है
इस tutorial को सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा
relational operators जैसे
less than से कम: जैसे a b
less than or equal to से कम या बराबर: जैसे a <= b
greater than or equal to से अधिक या बराबर: जैसे a> = b
equal to के बराबर जैसे a == b
not equal to के बराबर नहीं: जैसे a! = b
एक नियतकार्य के रूप में एक प्रोग्राम लिखें जिसमें इनपुट के रूप में तीन छात्रों के अंक हों
किस छात्र ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं यह देखने के लिए अंकों की तुलना करें
यह भी जांचें कि क्या दो या अधिक छात्रों ने बराबर अंक प्राप्त किए हैं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
spoken tutorial project team
spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाओं का आयोजन करती है
उन्हें प्रमाणपत्र भी मिलता है जो एक online test pass करते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी मुंबई की ओर से मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद